यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे बै--

और यहाँ पे बोहोत बड़े-बड़े सूखे पेड़-पौधे भी है और यहाँ पे एक बड़ा पेड़ लगा है और यहाँ पे एक झोपड़ी भी बनी है ब्लैक कलर की।

और यहाँ पे आस पास पेड़-पौधे भी लगे हैअउर यहाँ पे वाइट कलर के टेंट भी बने है।

एक ग्राउंड है जहाँ पर बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है और कुछ घर भी बने हुए है यहाँ पर।

एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग टाइप की दिख रही है यहाँ पे एक रोड भी है यहाँ पे गमले रखें हुए है और यहाँ मिट्टी भी पड़ी हुई है।

ट्रैक सूट टी-शर्ट लोवर नेकर बैटबॉल फुटबॉल बास्केट बॉल रिंग शूज ट्रॉफी मेडल सभी समान मिल --

ये एक हॉस्टल होटल टाइप का दिख रहा हॉस्पिटल टाइप का दिख रहा हैं।